छवि में हमें एक बहुत बड़ी नदी दर्शाई गई है। नदी मे कुछ नाव तैरते हुए भी दर्शाऐ गए हैं।

स्थल के चारो ओर काफी हरियाली देखी जा सकती है। बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दर्शाए गए हैं।

नदी बहुत ही बड़ी दर्शाई गई है और व्यक्ति किनारे पर सीढ़ियों पर चढ़ा खड़ा दर्शाया गया है।

इस छवि में हमें रात के समय बाजार का दृश्य दर्शाया गया है जहाँ काफी सारी दुकाने खुली दर्शाये गए हैं।

इस छवि में हमे नए जमाने के नाई की दुकान का दृश्य दर्शाया गया है।